और लगता है यह टीका इसने इसलिए --

हो रही है वो अच्छे तरीके से सजाया काफी बेहतरीन तरीके से ये सजाया --

तालाब में एक तस्बीर है जहां पर तालाब में ये एक नाव तैर तैर रही है और जिसमें जो है एक लड़का बैठा है जिसमें ये फोटो क्लिक किया है जिसने ये सनसाइड होते हुए ये काफी सुंदर लग रहा है हमें ये नजारा काफी अच्छा लगा ये काफी बेह --